यहाँ पर ये एक बड़ा-सा पेड़ है और इसके लंबे-लंबे पत्‍ते हैं और उसकी दूसरी साइड पे एक बड़ा-सा मकान है जिसपे एक लाईट लगी रखी है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा होल दिखाई दे रहा है जिस पर बहुत से --

यहाँ पे एक ग-गमला दिखाई दे रहे हैं गमले के ठीक आगे पे एक बड़ा-बड़ी सी बिल्डिंग है और इसके ऊपर बिजली के तार-तार हैं और इसके ठीक सामने पे ए-एक बहोत बड़ा-सा गांव है और यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक आदमी भारत का झंडा बना रहा है नीचे मे रंगोली से और उ-उसपे लठी से --

और अंदर एक मूर्ति है उसमें लाईट जल रखी है और साईड नीचे गद्दे बिछ रखे हैं और बहुत सारे स्‍टेण्‍ड खड़े कर रखे हैं।

और ये यहाँ पे एक टेबिल रखा हुआ है काला-काला और इसके पीछे ये हैं।

इन बहुत सारे हरे-हरे पत्‍ते हैं और बीच तालाब में है और उसके दूसरी साईड पे देख सकते हैं आप एक बाउंड्री लगी है जिसके बाहर मकान है और लोग वहाँ पे आ रखें --

और यहाँ आदमी के हाथ में एक घड़ी है नीचे उसने पैंट जूते पहन रखे हैं और ये बहोत अच्‍छी जगह है तो आप देख सकते हैं यहाँ बहोत अच्छा माहौल है।

और एक यहाँ पे बोलेरो भी खड़ी हुई है और उसके बगल में दूसरी साईड से एक बिल्डिंग है जो पीले कलर में है और ये एक स्‍कूल लग रहा है जिसपे गाड़िया खड़ी हैं और स्‍कूल के नीचे से पेड़ भी ऊपर की लिए जा रखा है।

यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं और स्‍पीकर भी लगे हुए हैं और यहाँ पे लाईट भी लग रखी हैं।